यह एक सर्कस दिखाई दे रहा है जहाँ फिसलपट्टी है कुछ झोपड़ी टाइप की दिखाई दे रही है।

सैलून दिखाई दे रहा है जहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर में बहोत सारे चेहरे बने हुए है जिसमे हेयर स्टाइल दिखाई दे रहा है।